एक रस्सी ताना हुआ है उस पे कई सारा शैंपू तेल बोरोप्लस ये सब टांगे हुए हैं।

कुछ लोग हैं जो बैठी हुई है मेहंदी रखा हुआ है।

जिसे रंग बिरंगो फूलों से सजाया गया है बगल में केले का पत्ता लगाया गया है।

रंग बिरंगे फूल है जैसे में येलो हो गया ऑरेंज है ग्रीन है नीचे बहोत सारे लोग हैं।

और सामने भी बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है और वो दुकान का बिल्डिंग --

दुकान के ऊपर रेख बनाया हुआ है और रेख में बहुत सारे सामान रखे हुए जैसे गिलास रखा हुआ है कटोरी रखा हुआ है।

बाहर में बहुत सारे कारें खड़ी हुई हैं ट्रैक्टर खड़ी है।

सामने में एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है बाहर में बहुत सारा बिल्डिंग्स हैं।

यहां पर बहोत बड़ा सा बिल्डिंग का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे सैलून का दृश्य दिख रहा है।

लकड़ी को चारों तरफ से घेर दिया गया है बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है।

छोटे छोटे कंकड़ ये सब फेके हुए हैं कुछ घांस है छोटे छोटे बगल में बड़ा बड़ा पत्थर रखा हुआ है।

उसपे एक एक बैलून है एक लड़की खड़ी है जिसका पैर दिख रहा है आसमान साफ है पूरा।

एक पंखा लगाया हुआ है वाइट कलर का लाइट जल रहा है व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है।

ऊपर में बहुत सारा फ्रेम लगाया हुआ है गेट लगाया हुआ है और नीचे में बैंच बहुत सारे लगाए हुवे हैं।

कुछ बीज रखा हुआ है क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

ऊपर एक खंभा गाड़ा हुआ है उससे तार गया है दूसरे तार के पास आसमान पूरा साफ है।

यहां पर छठ घाट का दृश्य दिख रहा है।

घर पुरा ईंटा का बनाया हुआ है।

एक आदमी है जो चढ़ रहा है सीढ़ी से व्हाइट कलर का कुर्ता पहना है।

यहां पर कई सारा पत्थल का दृश्य दिख रहा है।

सीमेंट का रेख बनाया हुआ है ऊपर में उसपे बहुत सारे बाल्टिस रखे हुए हैं कुछ बाल्टी व्हाइट कलर का है कुछ ब्लू कलर का कुछ येलो कलर का।

बगल में बिल्डिंग्स बनाए हुए हैं उसके छत का पेंट का कलर पिंक किया हुआ है।

इधर उधर गया है ब्लैक कलर का आसमान पूरा साफ है।

नीचे में बाल्टी रखा हुआ है वाइट कलर का और बगल में खींचने वाला टायर जैसा बनाया हुआ है।

एक बड़ा सा पोस्टर लगाया उसे पे कुछ लिखा हुआ है वाइट कलर का।